यहाँ पे बहुत से भेड़ भी है।

ये के एक भाग में मैदान है।

इस भोले बाबा के मंदिर के किनारे एक बड़ा घ --

इस पंडाल के अंदर काफी भीड़ भी है।

यहाँ पे एक लड़का खड़ा है यह --

यह एक जूम क्लास है। ये जूम क्लास काफी बड़ा है।

एक मैदान है यह मैदान काफी बड़ा है।

यहाँ पर मन्नत मांगते हैं ।

यहाँ बड़े-बड़े पत्थर भी है।

यह पत्थर की ढिंग लगी हुई है।

यहाँ पर रुकने का भी व्यवस्था है।

इस पूल पर बहुत से आदमी आते-जाते है। यहाँ पर बहुत सी गाड़ी भी आती-जाती है।